और इसमें जो है टीना दिखाई दे रहा है टीना जो है वाइट कलर कर के दिखाई दे रहा है।

जो एक घर दिखाई दे रहा है और घर घर जो इसमें लाइट ग्रीन में दिखाई दे रहा है।

घर का सेंटर डोर का ऊपर में जो है क्लॉक दिखाई दे रहा है।

इसमें जो है स्कूटी दिखाई दे रहा है और स्कूटी जो है इसमें तीन तो दिखाई दे रहा है।

आदमी लोग दिखाई दे रहा हैं दो ठो औरत दिखाई दे रहे और एक मर्द दिखाई दे रहा हैं इसमें मछली भी दिखाई दे रहा हैं।

में जो है एक घर दिखाई दे रहा है।

घर जो है येलो कलर और व्हाइट कलर करके दिखाई दे रहा है।

चेयर भी एक थो दिखाई दे रहा है ब्लैक और वाइट कलर करके और ये दुकान के पिल्लर को जो है ग्रे कलर से पेंट करके दिखाई दे रहा है।

और समान जो है इसमें मैगी दिखाई दे रहा है फाइव स्टार भी दिखाई दे रहा है और तेल भी दिखाई दे रहा है।

इसमें जो ए_सी भी दिखाई दे रहा है ऊपर जो है ऊपर में जो है लाइव बॉक्स दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।

और उसमें जंगल भी दिखाई दे रहा है जंगल जो उसमें ग्रीन कलर करके दिखाई दे रहा है।

श्री राजेश्वर बुक लिंक्स करके दिखाई दे रहा है और ये दुकान कुछ व्हाईट कलर पेंट करके दिखाई दे रहा है।

और सामने में जो एक दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में।

नदी के किनार में बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहा है।

ये जो है ग्राउंड है और ये ग्राउंड में जो है क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहा है लड़की लोग।

इसमें जो है वाइट कलर का लाइन खींच के दिखाई दे रहा है और इसमें जो है स्टांप भी दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर मे।

ये जो है वेजिटेबल का मार्केट है।

इसमें जो है बहोत सारे आदमी लोग दिखाई दे रहा है।

यहां में जो है पत्थर भी दिखाई दे रहा है पत्थर जो है ग्रे कर के दिखाई दे रहा है ग्रे कलर में।

इसमें जो है दो आदमी पत्थर का अंदर में दिखाई दे रहा है।

इसमे जो है बहोत सारे आदमी लोग भी दिखाई दे रहा है।

उसमें जो है मछली का टेबल जो है रेड कलर में देखने को मिल रहा है।